मुझे यहां पर एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है मुझे यहां पर दो डमी दिखाई दे रही है।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

मुझे यहां पर एक एंट्री बोर्ड दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक स्टेशनरी की दुकान दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर हरि घास दिखाई दे रही है मुझे यहां पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।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

मुझे यहां पर रेल की पटरी दिखाई दे रही है मुझे यहां पर कुर्सी दिखाई दे रही है।